यहाँ पे फूलो की दुकान है यहाँ पे एक फूल का माला भी टंगा हुआ है यहाँ बहुत सारे आदमी--

यहाँ पर एक बुक दुकान है बुक दूकान में बहुत साऱी पूजा करने की है।

यहाँ पे एक सड़क है सड़क के किनारे किनारे दुकाने है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और एक बस भी खड़ी है यहाँ पे एक बिल्डिंग भी दिख रही है।